लेकर जा रही है और सामने में आप लोग खुद देख सकते हैं कि एक सोलर पैनल लगा है जो कि एक --

जोकि एक व्यक्ति सूटकेस ले के नजर आ रहा है और एक सामने में ऑटो भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक उसके पीछे आप लोग को एक व्यक्ति नजर आ रहा होगा।

मारुती सुज़ूकी की कार है जिस का मॉडल है स्विफ्ट डिज़ायर और उसके पीछे भी आप लोग को एक कार रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और इन कारो का दोनों टायर आप लोग को खुला हुआ देख सकते हैं।

ड्रेसेस रखे हुए नज़र आ रहे हैं जो कि सामने में एक गिलास सजा कर रखा हुआ है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि सौ या पचास लोग आराम से बैठ कर --